यहाँ काउंटर के पास तीन चार लोग खड़े हुए मास्क में और इना सामने एक लड़का खड़ा हुआ है।

सामने की तरफ ऊपर के एक नीले रंग का बोर्ड लगा हुआ।

बस के पास खड़ी है सामने एक मंदिर दिख रहा है एक और ल-ल एक और बस दिख रही है साइड में दुकान--

यहां एक जगह दिख रही है जहाँ सामने की तरफ एक येलो कलर का बोर्ड लगा सेंट्रल बैंक का नीचे की तरफ शटर है।

साइड में एक छोटा-सा पहाड़ जैसा है पीछे तरफ एक दीवाल है सब लोग कही और देख रहें हैं| अलग-अलग जगह मे सामने एक थैला रखा हुआ है।

सामने ट्रेन की पटरी नजर आ रही है सीढ़ियों पे और स्टेशन पे कोई भी नहीं है लाइट दिख रही है तीन है शेड डले हुए है।